यहाँ पर बच्चों काो प्रोग्राम हुआ था छोटा-सा। वहाँ पर देखो गिफ्ट बाँट रहे हैं सबको। सबके हाथ में गिफ्ट हैं यहाँ पर देख लीजिये होते हैं कुछ मैडम वगेरा हैं।

यहाॅं पर किसी फोटोग्राफर ने खींचकर अच्छे तरीके से शादी को मैरिज को मैरिज में डिज़ाइन दिया है पीछे तरफ शादी भी हो रही है शायद उधर देख लीजिए मैरिज हॉल है साउथ इंडियन का।

देख लो यहाॅं पर दवाई है शायद ये शर्ट पहन रखा है इन्होंने पर्पल कलर का और काफी अच्छे तरीके से डाल रहा है जो कि जड़ों तक पहुंच जाए।

कि एक पुलिया की फोटो है जहां पर किनारे तरफ दुकानें लगाई गई हैं और उसमें लोग कुछ सामान खरीद भी रहे हैं। शायद सब्जी वगैरा होंगे या फूल वगैरा होंगे। कोई ना कुछ चीज बेच रहे हैं और उन्हें खरीदा जा रहा है।

यहां पर रोड से देखो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जा रही है यहां से टोयोटा कंपनी की।

इधर पलंग पड़े हैं वहाँ जग जनरेटर पड़ा है जोकि लाइट सबको सप्लाई करता है फ्लैटों में देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। गाड़ी भी अच्छी खासी दिख रही है।